यह एक रेस्टोरेंट का दृश्य है। यहां पे बहुत से बैलून लटकाए गए हैं।

यह एक घास के मैदान का दृश्य है यहां पे बहुत सारे फूल लगाए गए हैं।

इसके पैर के पास एक छूरी रखा गया है। आदमी ने ब्लैक कलर का जैकेट पहना हुआ है।

इसके साइड में एक खंडर है वहां पे एक हाथी बिछा हुआ है ।

एक गेट लगा दिया है जिसका कलर ब्राउन है।

साइड में एक होटल है जिसका नाम है श्री नाथ पैलेस जो कि रेड कलर से लिखा गया है।

यह एक बैंक का दृश्य है जोकि स्टेट बैंक आफ इंडिया का है।

दो पेड़ हैं इसके कार्पेट का कलर रेड है।

यहाँ पे एक आदमी है जिसने ब्ल्यू कलर का शर्ट पहना हुआ है।

यहां पे दो लोग है एक आदमी ने वाइट कलर का शर्ट पहना हुआ है ब्राउन कलर का पैंट पहना हुआ है।

यहां पे एक लड़का खड़ा है जिसने ब्लू कलर का जैकेट पहना हुआ है।

दो लोग पेड़ के नीचे खड़े है एक आदमी रोड पे खड़ा है।

यह एक घर का दृश्य है यहां पे इसके साइड में एक बोर्ड लगाया गया है।

के ऊपर के ऊपर एक टंकी है जो कि पीले कलर का है।

यह एक दुकान का दृश्य है यहां पे कुछ बलूंस लटकाए गए हैं जो कि हरे कलर के हैं।

इसके ऊपर गुंबज लगाए गए हैं उसके ऊपर त्रिशूल है यहां पर बहुत सारे लोग खड़े हैं।

यहां पे दो गाड़ियां खड़ी है इसका कलर रेड है कुछ बच्चे खड़े हैं जिसने रेड कलर के स्वेटर पहने हुए हैं।

यह एक घर है। इस घर का कलर ब्लू है यहां पे एक गेट दिखाई दे रही हैजिसका कलर ब्लू है जो कि खुला हुआ है।